किनारे में कुछ धब्बे-धब्बे दाग दिखाई दे रहै हैं नीचे का दरवाजा बहुत बड़ा है।

लाल के कुर्सी सब दिखाई दे रहे है इंसान लोग सब खड़े हैं।

और नीला हैं सफेद हैं व्यक्ति लोग आगे की तरफ बहुत ज्यादा हैं।

खड़ा हुआ है और एक जीप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है पीछे में--

यहाँ पे कुछ समारोह होने जा रहे है जैसे दिखाई दे रहे है व्यक्ति लोग नीचे में है।